रूम हैं रूम के अन्दर काफी सारे पीपल्स हैं जे जो कि गर्ल्स एंड बोईस हैं इन्होनें एक्सरसाईज का पोज लिया हुआ हैं।

एक स्टेज पर काफी सारे गर्ल्स एंड बॉयस खडे हैं यहां पर दो बॉयस के बीच में एक बॉयस खडा हैएंड दो बॉयस बैठे हैएंड दो बोईस को बीच में साईड मे भी एक बॉयस खडा है।

एक बैंक हैं बैंक के बहार बोहत सारी भीड़ हैजिसमें बहुत सारी लेडिज है बोहत सारी जेन्ट्स है और बोहत सारी बाइके भी लेफ्ट एंड राईट मे खडी है।

इस पर ये वर्क कर रहे हैं कुछ लोग ने रसिया पकड़ी हुई हैं तो कुछ लोग झुके हुए हैंऔर कुछ लोग इसे चलाने की कोशिश कर--

साईड मे एक रेलिंग बनी हुई हैएंड इसके निचे पानी है इसमे बहुत सारा पानी है नदी हैएक साईड मे आसपास पेड पोधे भी ग्रीन कलर मे दिखाई दे रहे हैएंड इस क सडक सुनसान है पूरी ।

ये एक चर्च हैं चर्च के बाहर बहुत सारे पीपल्स कुछ गर्ल्स हैं कुछ बोईस हैं एंड ये वाईट कलर से पेंट हो रहा हैं एंड इस पर एक लाईट लगा हुआ हैं।

यह एक टेम्पल है टेम्पल के बहार बहुत सारी अ कैंडल्स चल रहे है बोहत सारे पीपल्स है कुछ जेन्ट्स है।

चर्च जो हें वाईट कलर में पेंट हें एंड साईड में एक क्रोस बना हुआ है ऊपर कुछ झालरे लगी हुई है एंड पिंक कलर में साईड में डेकुरेट --